इसमें इधर साइड में दिल लगा है फूलों से सजा हुआ है ऊपर ये तरह तरह की लाइटें लगी हुई है।

इस फोटो में ये बच्चे हैं जो की नृत्य कर रही है ये कोई झंडे के दिन का नृत्य लग रहे हैं।

और ये लेडीज जिनके सभी के तरह तरह के अलग अलग कपड़े पहने हुए है ये नृत्य कर रही है।